मिट्टी का ढेर दिखाई दे रहा है रेतैली मिट्टी का। राइट साइड में पेड़ लगे हुए हैं। हरी हरी पतियाँ आसमान का कलर सफेद सा सा दिखाई दे रहा है।

ये आदमी खड़ा है उसके बड़े बड़े बाल दिखाई दे रहे है और उसकी शर्ट का कलर सफेद दिखाई दे रहा है ।

एक आदमी खड़ा हुआ है नाव में। लकड़े की दो नाव रखी हुई है। नाव के ऊपर वो आदमी खड़ा है। नीचे फानी भरा हुआ है। हल्का सा --

रूम दिखाई दे रहा है। क्लासरूम में व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है। टीचर दिखाई दे रहा है जो कुछ लिखवा रहा है। स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे है गर्ल्स एण्ड बॉय्ज़ ।